और लाईटें जल रहीं हैं और पीछे पर्दा लगा हुआ है |

जिससे सबके एक पैर जमीन पे एक से पैर उठा हुआ हाथ में हाथ दोनों जुड़े हुए हैं।

हवाई अड्डा है हवाई अड्डा में एक प्लेन खड़ी है एक ट्रक खड़ा है इंडियन आयल और कुछ नीचे फर्श पड़ी हुई है।

हव एक हवाई अड्डा है जिसमे से एक गाडी खड़ी है एक फ्यूल का ट्रक गाडी की --